आर्मी का दिखाया जा रहा है। यहाँ पे नेबि आर्मी है यहाँ पे फायर आर्मी है। यहाँ पे --

ये देखिए यहाँ पे मेला लगा हुआ है और इ बहुत ही बरा मेला लग रहा है बहुत ही बड़ा मेला है और यहाँ पे देखिए पेड़ है और यहाँ पे बैलून - वैलून टांगा हुआ है मिक्की माउस है सुधा का दूध है।